और कुछ चेयर्स लगी हुई है एक काउंटर बना हुआ है यहां प--

और कुछ फर्नीचर बना हुआ हैं यहाँ पर काच का--

तीन आदमी दिख रहे है यहाँ पर। जो मैकेनिक है। कुछ मशीनें दिख रही है यहाँ पर।

ये एक यूनियन बैंक की इमेज है।

यहां पर एक यूनियन बैंक का ए_टी_एम लगा हुआ है।

आस पास एक खाई जैसा है और यहां पर हरी भरी घास फूस सारी है।

और साइड में कुछ तार का बंडल टंगा हुआ है यहाँ पर।

और यहां पर कांच से बना हुआ ये फिश पॉट दिख रहा है।

सामने हरे कलर की बाउंड्री से दीवाल उठी हुई है और यहां पर पेड़ भी लगे हुए हैं बड़े-बड़े और यहां पर योगा कर रही है कुछ लड़कियां --

एक ब्लैक कलर की कार दिख रही है और यहां पर कुछ बाइक भी खड़ी हुई दिख रही है।

यहां पर टेबल्स लगी हुई है खाने के लिए और अंदर सामान भी बिक रा--

और यहां पर कुछ पार्क में लोग बैठे हुए दिख रहे--

और यहां पर बाहर कुछ मूर्ति बनी हुई है।

और ये वर्ड्स लगे हुए हैं मंदिर पे।

रखी हुई और दरवाजे लगे हुए हैं इसपे काफी अच्छे औ--

जो वो पत्थर से बना हुआ हैं मार्बल के--

और दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

जो के इसके जो काउंटर है वो ब्लू और रेड कलर की से --

माता मंदिर लिखा हुआ है जो पिपली बाजार आंवला गेट धार में है।